बहुत सारे ट्रीज भी दिख रहे हैं।

दीवारों पर लाइट पिंक कलर करा हुआ है।

ये एक कार रिपेयर की दुकान दिख रही है।

यहां पे कोई भी लोग नहीं नजर आ रहे--

यहां पर बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं।

और कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं।

उसके सामने बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

यह कोई गंदे नाले की पिक्चर दिखाई दे रही है।

और बिल्डिंग बहुत पुरानी नजर आ रही है।

ये बहोत पुराना जंगल दिखाई दे रहा है।

ये एक किराने की शॉप दिख रही है।

यहाँ पर कुछ कारें नजर आ रही हैं।

यहां पर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

छोटी भी है मोटी भी है।

यहाँ पर ब्लू कलर की मैट लगी हुई है।

और शेर डले हुए हैं।

कांच के कैबिंस बने हुए हैं।

उसके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं।

शेल्फ बनी हुई है लकड़ी के केबिनेट्स बने हुए हैं।

शील्ड्स रखी हुईं हैं और बलून से डेकोरेट करा गया है।